यहाँ पर कई लोगों को एक साथ जाते हुए देखा जा सकता है ऊपर बहुत सारी सफेद रंग की लाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बहुत सारे लाइट के तारों को भी देखा जा सकता है।

यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि हाफ टी शर्ट पहने हुए खड़ा है अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ देखे जा सकते हैं और इसके थोड़ी ही दूरी पे पहाड़ दिखाई दे रही है।

नीचे की ऊप नीचे की साइड --

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और इस अ और इस बिल्डिंग में बहुत सारी बालकनी बनाई गई है जिसमें से बहुत सारी खिड़कियां देखी जा रही है।

ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है कुछ टैम्पूओ का कलर ब्लू है एंड कुछ टैम्पूओ का कलर काले और येलो कलर की दिखाई दे रही है सभी टेंपू गोल लगी है।